खुले यहाँ और घर भी बने हुए है। लाइटें भी जल रही हैं और कुछ लिखा भी हुआ है।

यह एक खुले खुला पहाड़ सा लग रहा है। बहुत हरियाली जैसी है। एक जो जिससे बॉल नहीं खेलते हैं वो हेलमेट रखा हुआ है।

और और ये इनमें जो डॉट -डॉट काले ताजे एकदम फ्रेश लग रहे हैं और इनके नीचे भी कुछ रखा हुआ पेपर्स नजर आ रहे हैं।

मकान बन रहा है इस मकान में बहुत सारे डंडे इधर से उधर लगाए गए हैं और इटे भी इधर से उधर बहुत सारी पड़ी हुई हैं गिट्टी भी गिट्टी का ढेर भी लगा हुआ है।

और एक गाय बंधी है वो गाय ब्लैक कलर की है| उस तरफ भी एक गाय है वो केस जो मुख ओर बंधी है| सब व्हाइट कलर सफेद कलर की हैं और इसने --